स्कूल ए एहा मस्त बढ़िया दिखत हे पीछे में भी पेड़ पौधा हे सामने म बाइक हे तिरंगा झंडा के या लगे हे तिरंगा झंडा हे मैदान हे ग्राउंड मस्त हरा-भर पौधा हेवय मैदान हे।

गार्डन ए मस्त बढ़िया दिखत ए सामने हा मस्त फुल बीछे हवय अगल-बगल मा मस्त खंभा टाइप्स से हे पेड़-पौधा हे अंदर ह गार्डन टाइप्स हे मस्त बढ़िया दिखत हे पेड़-पौधा हे।

लड़की हे जात हे बाइक खड़े हेवय सामने म बाल्टी मन दिखत हे घमेला दिखत हे फुटबॉल हे खाई खजेना के दुकान दिखत हे म अंदर में भी लड़की मन हावय बढ़िया दिखत हे।

अंदर के जो बने हे घर दुआर ते मन्नन पोताय हवय हरा कलर मा नीला कलर मा--

सामने तो रोड दिखत हवय पेड़-पौधा भी हे तीन-चार ठो अगल-बगल में स्कूल है और सामने म एक ए स्कूटर भी है।

सामने म एदे गेट हे बगल म एदे अंदर म लड़का खड़े हे शीशा लगे हे सामने म बगल म पेड़-पौधा है बगल में झंडा है बंधन कलर के ओखर ऊपर मे भी लाल कलर के झंडा हेवय।

ट्रक हे स्कूटर हे पीछे में भी कॉलेज के स्कूल --

बहोत सारा बस हे आठ दस ठन बस हे सामने म मार्सेल हे छोटे से मंदिर भी हे ओमा तीन चार ठो झंडा हे लाल कलर के --